यहां इंडियन ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है एक पोल --

ये एक हवेली की जैसा एक घर बड़ा सा घर जिसमें घ--

कोफी में या किताब में कुछ।